एक व्हाइट बोर्ड लगा है बोर्ड पे कुछ लिखा है।

टेंट लगा है लीला टेंट है।

ईंट भी रखी हैं आसमान दिख रहा है हरी नेट दिख रही है।

एक पाइपलाइन है कुछ झूले रखे हैं एक रास्ता है।

एक टूरिस्ट बस खड़ी है जो एक आदमी खड़ा है उसमें पेट्रोल डाल रहा है।

एक तार जा रही है आसमान दिख रहा है रोड प खड़ा है।

उसके बगल में एक और पेड़ है और पीछे बगीचा लग रहा है।

नीचे टालचें लगी हैं एक परछाई में एक इंसान की तस्वीर दिख रही है।

ये किसी नर्सरी की तस्वीर है ऊपर नेट है कुछ पौधे लगे हैं।

यह किसी पंगत का हॉल है ये मंदिर भी लग रहा है और शादी भी लग रही है पता नहीं क्या है पर अंधेरा है समझ में नहीं आ रहा है।

पौधे लगे है इसपे नाम लिखा है कला भवन है और ऊपर रात हो रही है लीले बल्ब जल रहे हैं।

कुछ पेड़ पौधे लगे हैं वह पीछे लगे हैं मुझे दिख नहीं रहे हैं टालचे भी लगी हैं गिट्टी पड़ी है।

ये पूल खेल रहे हैं जो पोल --

खुले आसमान में एक लीले कलर के अंकल खड़े हैं।

पीछे जंगल है और जंगल में एक टावर भी लगा है।

दो ऑटो खड़े हैं और एक पीली टी शर्ट में भैया हैं और यह एक लड़का बिलर खोपड़ी में दिखाई दे रहा है खुला आसमान है।

और एक रोड है जिसमें एक अंकल दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ पाइपे भी बिछी है। लाइटिंग के लिए और कुछ राडे ऊपर छत जोड़ने के लिए --

और एक काली शर्ट में अंकल की पन्नी में कुछ रखा है शायद खेले हैं।

ऊपर एल_ई_डी बल्फ भी लगी हैं।

बैनर है वह लगा हुआ है लाल कलर का --

ये एक पोस्टर है जिसमें लिखा है मुक्त राशन और शायद इसमें पी_ए_म मोदी जी हैं।